लाइट बस के फ़ैस्लिटी बहुत अच्छा बा कंडीशन भी बहुत अच्छा बा। पेड़-पौधे बाटे आस-पास पानी भरल बा।